और पीछे में कुछ सब्जियां भी बेची जा रही हैं।

और भी बहुत सारी लोहे की चीजे हैं।

यह एक मील है जहां पे आटा पिसाया जाता है जहां पर गेहूं बहुत सारी दिखाई दे रही है अलग-अलग बोरे में कुछ कुछ सामाने रखी हुई है।

इस पेट्रोल पंप के पूरा जो ऊपर में बनाया हुआ है उसका कलर ब्ल्यू व्हाइट और रेड में है।

और इसके ऊपर टेंट भी लगा हुआ है और जिसके नीचे बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं।

जो की छठ किए हुए हैं दिए जल रहे हैं और लाइट लगाया हुआ है।

एम_आर मोटर्स यहां पे कुछ मोटर्स मिलते हैं।

इस चर्च को पेंट किया गया है येलो और रेड से और इसके ऊपर में एक वाइट कलर का स्टार बना हुआ है।

और नीचे में दिखाई दे रहा है पाइप जो कि कार को धुलने का काम किया गया है यहां पे।

यह एक पेट्रोल पंप है इस पेट्रोल पंप का नाम है माता जी फ्यूल्स मोखे।

उसके बाद इसमें वाइट रेड ब्लू कलर के--

इलेक्ट्रिक फोटो स्टेट ये एक श्री राम इलेक्ट्रिक फोटो स्टेट का शॉप है।

कुछ आदमी भी चल रहे हैं जो कि यह दृश्य देखने आए हुए हैं और बहोत ही सुंदर आसमान दिखाई दे रहा है खुला आसमान।

और यहां पे बड़े बड़े पहाड़ भी दिखाई दे रहे हैं।

और इसका वॉल पेंट किया गया है पर्पल कलर से।

ये एक मंदिर है और ये मंदिर बहुत ही सुंदर है।

रेड कलर का है इसकी गेटे भी बहुत प्यारी लग रही है जिसमें अलग अलग तरीके की कलर किए हुए हैं।

ये एक रोड है जहां पे बहुत सारे लोग ह।

और बहुत सारे लोग एक टीम में हैं।

यहां पे लोहे का गेट लगा हुआ है पूरा बाउंड्री में घेरा हुआ है लोहे लोहे से।

और ये एक पार्क की तरह दिखाई दे रहा है सामने में --

ये एक क्लीनिक की तरह दिखाई दे रहा है।

जहां पे डॉक्टर बैठ के खून जांच करते हैं।

ये एक स्कूल की तरह दिखाई दे रहा है ये आर_के पब्लिक इस्कूल है इसकी वोले जो है ब्लू और व्हाइट से पेंट की हुई हैं।

गेंदे के फूल से पेट्रोल पंप को सजाया गया है इसके ऊपर में ब्लू कलर का सीटा डाला हुआ है।